वहां पे बहोत सारे गमलों में फूल लगे हुए हैं।

इस चित्र में एक कैफे के बाहर का दृश्य दिखाया गया है।

कुछ लोहे के सामान भी दिख रहे हैं ।

कुछ लोहे के मशीन भी रखे हुए हैं और नट और छड़ भी रखे हुए दिख रहे हैं।

बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

एक घर भी दिख रही है जिस घर के बाहर गेट अल्बेस्टर की है।

एक पेटीएम का स्कैनर रखा हुआ है।

बहोत सारे चेयर लगे हुए हैं जिसपे बहोत से व्यक्ति बैठे हुए हैं।

इस बिल्डिंग का कलर मोस्टली व्हाइट और मरून है।

हरे रंग का बड़ा बैनर भी लगाया हुआ है।

इस चित्र में एक पर्ट्स की दुकान दिखाई दे रही है।

एयरपोर्ट में बहुत सारे गमलों में पौधे लगाए हुए हैं।

बड़ी सी मैदान दिख रही है जिसमें छोटे छोटे घास लगे हुए हैं।

इस चित्र में एक कोचिंग दिखाई दे रही है जिस कोचिंग में बहोत सारे बेंचेज लगे हुए हैं।

एक गैस फैन भी लगी हुई है।

जैसे डंबल ट्रेडमिल साइकलिंग और भी बहुत से मशीने--

एक टोकरी भी दिख रही है जिसमें पूजा का समान है।

सीलिंग फैन भी लगे हुए हैं।

दीवार पे एक पोस्टर भी लगाई हुई है।

एक टी वी भी लगी हुई है एक वाइट कलर का कपड़ा भी टंगा हुआ है।

हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं।

इस चित्र में एक शॉप दिखाई दे रही है।

गार्डन फ्रेश लिखकर बाहर बैनर लगे हुए हैं।

बगल में एक जूते की दुकान दिखाई दे रही है।

इस हाल में एक वॉल क्लॉक भी लगी हुई है।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

स्टेज के ऊपर बहोत सारी महिलाएं और पुरुष खड़े हुए हैं।

हॉस्पिटल के बाहर के_सी रॉय मेमोरियल हॉस्पिटल लिखकर लोगो लगा हुआ है।